यहाँ पर एक स्टार बना हुआ हैं। दीवाल मैं जिसमे नीले और हरे कलर का पेंट है। अंदर और बिच मैं एक सफ़ेद ड्रेस मैं महिला हैं।

और पीछे एक खम्बा दिखा रहा है जिसमे नीले कलर का पेंट है और एक बगल में लड़का छोटा सा है|